ये देखिये ये देखने में कितना सुंदर खूबसूरत लग रहा है ये जो है ना एक वृक्ष है वृक्ष के आगे में सामने में बादल है बादल के ऊपर में बादल है नीचे --